गॅरेज है जहाँ पर दो कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर एक कार जो जॅक के ऊपर खड़ी हुई है जिसके अन् जो की जिसकी रिपेयरिंग हो रही है यहाँ पर कुछ सामान भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई दिखाई दे रही हैं मूर्ति के पीछे एक फोटो लगा हुआ हैं अहः जिसकी बाउंड्री काफी सुन्दर लग रही हैं।

ये एक बहुत बड़ी जगह है जहा पर छोटे छोटे टेंट बने हुए दिखाई दे रहे है जो खाफी सुंदर लग रहे है यहाँ पर एक रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये गॅरेज है जहा पर एक कार खडी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर एक बाइक भी खडी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे कार का गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ--

ये एक हॉटेल है जहा पर लकड़ी के चेयर्स और टेबल्स लगी हुई है जो खाफी सुंदर लग रही है इसकी दीवारों पर खाफी सारी पैंटिंग की हुई है जो बहुत ही सुंदर लग रही है।

ये एक शॉप है जिसका गेट शीशे का बना हुआ है जिसमे क्रीम कलर की बाउंड्री बनी हुई है फ्रंट पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो रेड कलर का है।

ये एक बिल्डिंग है जिस की बाहर बहा जिसकी बाहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन की हुई है।

यहाँ पर एक बड़ा सा मिट्टी का हाथी बना हुआ दिखाई दे रहा है जो काफी सुन्दर लगा रहा है जिसके ऊपर फूलों की माला टंगी हुई है यहाँ पर ऊपर के साइड कुछ लाइटिंग लगी हुई है यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

अ राइट साइड की दीवार पर एक तस्वीर लगी हुई है अ अ यहाँ पर कुछ टेब रेडियो भी रखे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक ब्लैक कलर का स्टूल रखा है जिसके ऊपर एक रेडियो रखा हुआ।

छत में कुछ ब्लैक कलर की लाइट्स टंगी हुई है जिसमे ऑरेंज कलर की लाइट् जल जलती हुई दिखाई दे रही है सामने के साइड एक दिवार है जिसमे एक पोस्टर लगा हुआ है।

के बाहर दो वो ब्लैक कलर के बोर्ड लगे हुए है जिस में कुछ ल लिखा हुआ है अंदर की साइड एक छोटा सा गमला रखा हुआ है यहाँ पर बहुत सारे मग रखे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर ए_सी लगा हुआ है एक घंटा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

साइड दो बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की व्हाइट कलर की है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ पेड़ सूखे हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर बहुत सारी टैक्सी खड़ी हुई है कुछ कार्स खड़ी हुई दिखाई दे रही है कुछ बाइक्स दिखाई दे रही है कुछ लोग खड़े हुए है यहाँ पर कुछ दुकाने भी दिखाई दे रही है।